एक घर भी दिख रहा है जिसमें खिड़कियां लगी हुई हैं।

कैंचियां भी लाइन से रखी हुई है।

सामने बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

इस फोटो में सामने एक लड़का दिख रहा है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है वो पेड़ो में पानी डाल रहा है।

एक रोज भी दिख रहा है पिंक कलर का।

एक कुर्सी भी रखी हुई है।

इस फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिख रही है सफेद कलर की।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

दो आदमी दिख रहे हैं जो बोरी उठाए हुए हैं और एक आदमी डाले के अंदर है।

सामने एक आइसक्रीम की शॉप दिख रही है।

बहुत सारी खिड़कियां भी दिख रही है।

ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एयरटेल लिखा हुआ है।

बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं।

ज़मीन पर एक हरी कलर की कालीन भी बिछी हुई है।

दो लोगों ने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। एक ने क्रीम कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।